कुछ नीली रंग की गाड़ीयां है तो कुछ काली रंग की गाड़ीयां है कुछ मोटरसाइकिल है कुछ कार है कुछ छोटे हाथी है।

कुछ हरे पौधे लगे हुए हैं तो कुछ लाल रंग के पौधे लगे हुए हैं उसपे सफेद रंग के फूल निकले हुए हैं।

एक लाल रंग का शटर है जिसपे लिखा है बहुरानी साड़ी तो कुछ गाड़ियाँ जा रही हैं तो कुछ आदमी जा रहे हैं।

जिस पे लिखा हुआ हेयर एक्सपर्ट प्रोफेशनल सैलून और एक चित्र बना हुआ है।

जो की बहुत ही बड़ा तीन मंजिला का बना हुआ ये एक आई.टी.आई. कॉलेज है।

तो कुछ काले रंग की कुर्सियाँ हैं और एक छोटा सा और बगल में कक्ष बना हुआ है जिसमें लैपटॉप रखा गया है।

बड़े पेड़ लगे हुए हें एक आदमी अपनी साइकल पे बेठ के जा रहा है।

और कुछ केलो के पतो से भी सजाया गया है।